ये एक फर्नीचर की दूकान का फोटो है जहाँ पर लकड़ी का फर्नीचर है ये सोफा रखा है दो छोटी कुर्सियाँ रखी है।